इस चित्र में बहुत सारे चेयर दिखाई दे रही--

सामने की तरफ वाइट कलर के बिल्डिंग दिखाई दे रही--

इस चित्र में पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं और झाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

चित्र मे छे मूर्तियां दिखाई दे रही है जिसकी पेंटिंग अलग अलग की हुई है।

ये चित्र में उस पार एक लाल कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही --

ये दोनों व्यक्ति अलग अलग कलर की टी शर्ट पेहन रखी है।

चित्र में पा पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं और घने पेड़ ज दिखाई दे रहे--

सामने की तरफ ईंटों की दीवार देखने को मिल रही है।

इस चित्र में एक बस भी दिखाई दे रही है जिसपे व्यक्ति चढ़े हुए हैं।

वाइन शॉप का नाम राजा रानी स्नैकबार है।

यहां पे अलग अलग कलर के टाइल्स और मार्बल रखे गए हैं।

नदी का पानी हरा हरा दिखाई दे रहा है।

बाइक पे एक महिला एक जेंट्स दिखाई दे रहा है।

हॉस्पिटल का नाम ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी रेडिएशन ऐसा लिखा --

हॉस्पिटल के सामने फॉरवीलर गाड़ी दिखाई दे रही है।

चित्र में पीला लाइट ऊपर लगा हुआ है नीचे हरा लगा हुआ है।

नीचे टाइल्स दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट है।

इसमें अलग अलग कलर की बसें खड़ी दिखाई दे रही है।

सामने के तरफ झाड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े।

इनके पीछे वर्कर दिखाई दे रहे है येलो हेलमेट पहने हुए।

जोकि एक टेंपो दिखाई दे रहा है लाल कलर का --